बड़े बड़े सीमेंट के थमले भी हैं।

इस फोटो में बहोत सारी लोहे की कुर्सियां पड़ी हुई हैं।

और बहोत सारे व्यक्ति भी बैठे हुए हैं।

इस फोटो में लोहे का एक गेट बना हुआ है।

इस फोटो में बहुत सारे व्यक्ति खड़े हुए हैं।

और बहुत सारे व्यक्ति भी हैं।

एक बहोत बड़ी लकड़ी की मेज है।

एक बहोत बड़ा बोर्ड भी लगा हुआ है।

यह फोटो एक बहोत बड़ी सड़क का है।

और बहुत सारे छोटे छोटे पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं।

इस फोटो में एक बहुत बड़ी लकड़ी की मेज है।

यह फोटो एक दुकान का है।

इस फोटो में तीन मोटरसाइकिल खड़ी हुई हैं।

और एक पत्थर की बहोत बड़ी सलेप भी है।